यहाँ पर हमें एक सफ़ेद कलर का मंदिर दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर एक खुला आसमान है मंदिर का गुम्बद रेड येलो और ब्लू कलर से डेकोरेट किया गया है।

हमें यहाँ पर एक बंजर सी हवेली दिखाई दे रही है और उसके ऊपर खुला आसमान दिखाई दे रहा है हवेली में बहुत से लोग चढ़े हुए है कुछ से लोग निचे हैं।

क्लीनिक में एक पंखा लगा हुआ है लाइट भी लगा हुआ है क्लीनिक में डॉक्टर्स के लिए चेयर और दो पेशेंट के लिए चेयर रखा है माइक्रोस्कोप कुछ बुक्स और कुछ और इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहे है।